इस दुकान को नि हरा कलर का पेंट किया गया है।

टेबल पे कुछ सामान रखा गया है जो सफेद कलर का है।

इस हाल को सफेद कलर का पेंट किया गया है।

और बगल में टाइल्स लगे हुए हैं दीवार पर--

एक अंदर कार दिखाई दे रहा है।

इस स्कूल को लाल कलर का पेंट किया गया है बहोत सारे व्यक्ति बाहर खड़े हैं।

यह एक सैलून का चित्र है।

सारे पंखे लगे हुए हैं।

यह न्यू बस का फोटो है जो फूलों से सजाया गया है।

और एक व्यक्ति खड़ा है आगे बस के आगे।

यह एक दुकान का चित्र है।

इस होटल के बगल में एक फोन का दो फोन का दुकान दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्क का चित्र है।

इस पंडाल के अंदर वो कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस पेट्रोल पंप के सामने एक बोर्ड लगा गा लगाया गया है जो नीला कलर का है।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

यह एक दुकान का चित्र है।

कुछ व्यक्ति लाइन लगाके खड़े हैं।

इस दुकान के बाहर एक बड़ा सा ग्रील दिखाई दे रहा है।

जैसे की स्लाइस स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक पानी का बोतल कुरकुरे चिप्स क्रीम मसाला का पैकेट --

यह एक दुकान क चित्र है।

पानी के बोतल दिखाई दे रहे--